और उसके साइड में एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है उसका भी रंग ब्राउन कलर है।

यहां पे बहुत सारी काली रंग की चेयरे लगाई गई हैं।

यहां पर तीन लोग खडे हुए है जिसमें एक आदमी है और दो औरते है।

पर्स डाल के जा रही है जिसके साइड में एक दीवार है उसपे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है।

यहां पे काम चल रहा है जिसमें एक टप के जैसा बनाया गया है उसमें सीमेंट को भरा जा रहा है उनके बीचों बीच एक कॉलम है जो कि रोड़ों से बना के लगाया गया है तीन आदमी काम कर रहे हैं।

यहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसके ऊपर से बर्फ गिर रही है जिनके नीचे छोटे छोटे से घर हैं और घर के साइड में दो गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

उस रोड पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक चर्च है जो की बहोत बड़ा है चर्च में एक महिला माइक में कुछ बोल रही हैं उसमें स्टेज पे एज अ गेस्ट चार लोग बैठे है हैं और दो कुर्सियां खाली हैं कुर्सियों का कलर लाल है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं और इसमें बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं एक बड़ा सा पोस्टर टाइप है जिस पे लिखा है इंडियन ऑयल पेट्रोल डीजल ।